यहाँ पेन कॉपी एवं इन सभी चीज यहाँ उपस्थित है जो की पढ़ने के लिए लाभदायक एवं --

यह एक उम हाथी का पुतला बनाया गया है जो की मनुष्य --

जो की यहाँ गाड़ी ठीक कराने का समान --

कई कलर के उपस्थित फूल है एवं अति सुन्दर फूल है और बहुत अच्छी फूल लग रहे हैं।

भारत में बोला जाता है गाय हमारी माता है और --

और बहुत अच्छी-सी द्रिष्ट है जो देखा गया है।

एक झरना है जो की बहुत अच्छा एवं सुन्दर दिख रहा है एवं अगल-बगल में झाड़ियां --